बहोत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है सामने की तरफ बहोत से गमले रखे हुए हैं।

यहां पे कुछ लोग कोई तीन घोड़े को लेकर जा रहे हैं एक व्यक्ति के हाथ में दो घोड़े है।

और पीछे एक व्यक्ति उनके हाथ में भी दो घोड़े हैं येहं कहीं जंगल में से निकल कर जा रहे है।

आस पास में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं कुछ दीवारे और कुछ बाउंड्रीज --

यहां पर एक स्टोर है और इस स्टोर में बहुत सी दवाइयां रखी हुई है।

वो रखा है एक क्रिप कलर की बोटल रखी है और आस पास में अन्दर की तरफ भी बोहोत सारा सामन है।

यहां पर विशाल मेगामार्ट का एक बोर्ड लगा है जो नीले और गुलाबी कलर का है इसके ऊपर--

इसके साइड मे और भी बिल्डिंग बने हुए है और इसके सामने की तरफ बहोत सारी बाइक खड़ी है।

और बहोत ही छोटी-छोटी है अभी छोटे पौधे हैं और कही बीच में दूर लाइनिंग के ऊपर पानी भरा हुआ भी है।

ग्रीन कलर के पीले कलर के परदे लगे हैं और जो बिल्डिंग है वहां पर पीले और लाल कलर की लाइटिंग लगाई गई है और जो घर है वो पूरा सफेद कलर से--

यहाँ पर स्टेज पर एक परफॉर्म हो रहा है जहाँ पर बहती कलरफुल लाइटिंग लगी हुई है।

और पूरी बहोत ही सुंदर तरीके से गार्डनिंग की गई है।

और पीछे की तरफ बहोत सारी घास है दोनों तरफ बहोत से पौधे और पेड़ है।

और नदी अपने फ्लो में बह रही है और बीच बीच में किनारों पर यहाँ कुछ बड़े पत्थर भी हैं बड़े पत्थर भी हैं और छोटे भी हैं।

अंदर अलमारी में भी बहोत सारा सामान रखा है एक महिला अंदर की तरफ--

यहाँ पर एक शॉप है जिसमे अलमारी में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और भी हवा भरने का मशीन भी यहां पर सामने टंगा हुआ है और पीछे की तरफ कुछ पंखे भी रखे हुए।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए ग्रीन उधर ग्रीनरी दिख रही है।